यह एक ग्राउंड है यहां पे दो बन्दे दिख रहे है और अलग-अलग चित्र के दौरी रखा हुआ है।

एक गार्डन है और स्टील का उनमें साइड में लाइन दिया हुआ है दोनों तरफ झंडा ऊपर दिया हुआ है ऊपर में लाइट भी दिया हुआ है।